यहां मे बीच मे रास्ता है और आगे साइड बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहाँ पे मंदिर बनने का काम चल रहा है।

इस इमेज में हमे कमरा नजर आ रहा है।

नदी के किनारे एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है|

इसके अलावा एक लेडीज जा रही है।

जिसने पिली कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

यह इमेज हमें केंद्र की नजर आ रही है।

नीचे की साइड एक कार खड़ी नजर आ रही है।

जहाँ पे बहुत सारी कुर्सी टेबल है।

इस इमेज में हमें एक सड़क नजर आ रही हैं।

यहाँ पे दो साईकल भी रखी हुई है।

और यहाँ पे बच्चों की जम्पिंग भी है।

यहाँ पे नीचे की साइड कुछ मोटर साईकल भी खड़ी नजर आ रही हैं।

नीचे एक गुलाबी कलर की कैन है जो नीले कलर के स्टूल पे रखी हुई है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

पीछे के साइड हमें एक स्टेज नजर आ रहे हैं।

यह इमेज हमें जिम की नजर आ रही हैं।